और यहां पर बहोत आदमी आए हुए हैं।

ये एक कंपूटर मशीन सी है।

और यहां पर बिस्तरा और तकिया रखा है।

और यहां पर टैल भी लग रही है।

और एक आदमी अपनी बच्ची को दिखा रहा है सामान।

ये एक बहोत बड़ा हॉस्टल सा है।

और यहां पर मिक्सी मशीन भी रखी है।

और पीछे गॉड का निशान है और दो पंखे भी लग रहे हैं।

और दो टैंक पीछे लग रहे है उस मकान पर।

फूड उस्ताद की दुकान है।

और यहां पर मोमोज बर्गर पिज़्ज़ा मिलते हैं।

यहां पर बराबर में भी कही दुकान है।

और यहां पर दो लड़के पबजी खेल रहे हैं।

एक लोग ठेला ले उधर भी आ रहे है।

यहां पर एक दुकान है जहां पर बिस्कुट रखे--

और एक आदमी मास्क लगा बैठा है और एक इसके पास बैठा--

और यहां पर कुछ आटो भी खड़ी है और आदमी भी है।

यहां पर चटाई भी है और एक टेबल है।

यहां पर बहुत पेड़ लग रहे हैं। पीछे --